यहां पर दो गधे खड़े हुए हैं पीछे फुटबॉल रखा हुआ है और उनके पीछे कुछ सामान रखा हुआ है आगे तरफ से सफ़ेद कलर की एक पट्टी बनी हुई है जिसके कारण वह आगे नहीं जा पा रहे है।

यह एक स्टोर की तस्वीर है जहा पर टाटा मोटर्स जयपुर लिखा हुआ है बहार तीन कारे है और अंदर अन्य कारें है अंदर बहोत सारी लाइट जली हुई है।

पीछे बैनर पर एक स्कूटी जो की लाल कलर की है ओर अकीउलेटों लिखा हुआ है।